यहाँ पर एक जाली बंध है जिसमें कई सारे हिरण है यहाँ पर एक डंडा लगा है जिस पे पीला रंग पोता है यहाँ एक नीचे की ओर से डंडा रखा हुआ है जो जाली से टीका हुआ हैं।

--पीछे भी एक मूर्ति बनी हुई है यहां पर अलग अलग रंग करे हुए हैं पूरी जगह यहां एक गुलाबी रंग का गेट बना हुआ है जो कि बंद है।

एक बच्चे के हाथ में बोर्ड हैं जिस पर रखकर पेपर लिखा जाता हैं लकड़ी का यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं एक गाड़ी पर पीले और काले रंग का बैग रखा हुआ हैं।

ये एक घर है जिसके आइड साइड में कई सारी घासे उग रही है यहाँ पर कुछ चीज़ों की बेल भी लगाई हुई है।

यहां पर तेल के डब्बे साबुन दूध में मिला के दूध मसाला दूध में मिला के पीने के लिए --

यहां साइड में कई सारा कचरा ईंटे टुकड़े मिट्टी धूल सब पड़ी हुई है यहां पर एक छत कुछ लाल रंग का सूख --